overview of drupal पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम निम्न करना सीखेंगे: content management system विषयवस्तु प्रबंधन प्रणाली drupal
drupal की मुख्य विशेषताएं इस श्रृंखला का ओवरव्यू
पहले हम समझते हैं कि drupal क्या है drupal free और open source कंटेंट management system cms है
cms क्या है यह पुराने दिनों की तरह नहीं है जहाँ हमारे पास सर्वर पर बहुत सी html फाइल्स अपलोड की हुई होती थीं
पारंपरिक तरीके से प्रत्येक webpage अपनी खुद की html file रखता है
अब यह बहुत अलग है प्रत्येक पेज बहुत से कंपोनेंट्स उपयोग करके बनाया जाता है
प्रत्येक component भिन्नभिन्न स्थानों से आ सकता है
ये components कुछ programming logic उपयोग करके शीघ्रता से संयोजित किये जाते हैं
जहाँ आप देख रहे हैं मानिये एक desktop या एक mobile पर उसके आधार पर यह भिन्न हो सकता है
कहाँ से इसे कौन देख रहा है इसके आधार पर यह बदल सकता है आप भारत से इसे देखने वाले एक विद्यार्थी हो सकते हैं
या आप singapore से कुछ खरीदने वाले ग्राहक हो सकते हैं आप में से प्रत्येक एक अलग पेज देख सकते हैं
cms इस प्रदर्शन logic के समर्थन में एक program है
यह बहुत सी programming कार्यक्षमताओं जैसे php ajax javascript आदि उपयोग करता है
सारे cms सामान्यतः किसी भी formatting के बिना जानकारी विषय वस्तु को संचित करने के लिए एक database उपयोग करते हैं
विषय वस्तु की formatting अलग से की जाती है
cms गैरतकनिकी users से भी आसानी से एक website व्यवस्थित करवाता है
drupal एक ऐसा cms है जो open source है जिसका मतलब code मुफ्त रूप से उपलब्ध है
कोई भी इसे download कर सकता है और बदल सकता है
drupal को सन2000 में dries buytaert द्वारा स्थापित किया गया था जब वो विद्यार्थी थे
चूँकि यह open source है तो हज़ारों लोगों ने code संशोधित करने में मदद की है
वे फिर इसे छोटे संशोधनों के साथ उस समुदाय यानि community को वापस करते हैं
drupal समुदाय एक बहुत बड़ा और आपस में अच्छी तरह से जुड़ा हुआ open source समुदाय है
इस समुदाय में developers sitebuilders वालन्टिर्स volunteers हैं जो drupal को वैसा बनाते हैं जैसा आज ये है
यह बताता है कि drupal में come for the code stay for the community code के लिए आयें और समुदाय में बने रहें
शायद समान कारण के लिए आप इस समुदाय से जुड़ेंगे
आगे मैं drupal की 10 मुख्य विशेषताओं को सूचीबद्ध करती हूँ
number 1: drupal मुफ्त और पूरी तरह से ओपन सोर्स है
कोई भी source code को download और संशोधित कर सकता है
यदि आप developer हैं तो भी drupal बहुत उपयोगी है
number 2: drupal कार्य के अनुकूल है
drupal आज तक उपलब्ध सबसे ज़्यादा अनुकूलनीय systems में से एक है
drupal जटिल websites जिन्हें बहुत से अलगअलग custom data structures की आवश्यकता होती है पर भी अच्छी तरह कार्य करता है
बनाने वाले इसे cms और एक बॉर्डर web development platform दोनों तरह से उपयोग कर सकते हैं
number 3: drupal मोबाइल पर भी कार्य कार्य करता है
हम अपने चुने हुए किसी भी mobile से अपनी drupal site पर प्रत्येक पेज को देख और प्रबंध कर सकते हैं
number 4: drupal बड़े प्रॉजेक्ट्स के लिए बहुत अच्छा है
whitehouse gov से weather com और dallas cowboys तक drupal कोई भी project handle कर सकता है
drupal की उपयोगिता जटिल websites में ज़्यादा दिखाई देती है
यह उन लोगों के लिए सर्वोत्तम समाधानों में से एक है जो एक विशेषता संपन्न website बनाना चाहते हैं
और यह बड़े उद्यमों के लिए भी बहुत उपयुक्त है
number 5: drupal अनुकूल सामाजिक और खोजनीय है
drupal अपनी site और अपनी विषयवस्तु ढूँढने में लोगों की मदद करता है
drupal site के संपादकों को tags विवरण कीवर्ड और आसानी से एक्सेस की जाने वाली urls को जोड़ने की अनुमति भी देता है
number 6: drupal सुरक्षित है
drupal नियमित security updates के द्वारा हमारी site को सुरक्षित रखता है
hash passwords sessions ids जो permissions बदलने पर बदल जाती है
text format permissions यूज़र input को प्रतिबंधित करते हैं और भी बहुत कुछ
drupal security को बहुत गंभीरता से लेता है
number 7: हम उन हज़ारों मॉड्यूल्स को उपयोग करके जो drupal साइट पर विशेषताएं जोड़ते हैं drupal साइट का विस्तार कर सकते हैं
किसी भी विशेषता के बारे में सोचें और बहुदा किसी ने एक module बनाया है और इसे मुफ्त उपलब्ध करवाया हुआ है
हम उसी site पर विविध themes या themes के versions रख सकते हैं तब भी अपने वेबसाइट डेटा के दृश्यमान प्रदर्शन पर पूरी तरह से नियंत्रण रख सकते हैं
number 8: यदि आपको मदद चाहिए तो drupal का मददगार समुदाय है और जो बहुत बड़ा है
पूरे विश्व में drupal के आयोजन हैं
local आयोजन drupal camps कहलाते हैं
और प्रत्येक वर्ष पूरे विश्व में प्रमुख drupalcons होते हैं
बहुत सक्रीय forums यूज़र groups और irc chats हैं जो drupal समर्थन को समर्पित हैं
number 9: drupal की कुछ बहुत बड़ी और अनुभवी कम्पनियाँ हैं
इस श्रृंखला के लिए partner acquia drupal की सबसे बड़ी company है
भारत में drupal की 60 से ज़्यादा service कम्पनियाँ हैं स्वतंत्र रूप से काम करने वाले भी बहुत हैं जो drupal जानते हैं
number 10: drupal सब जगह है इस रेकॉर्डिंग के समय 12 मिलियन वेबसाइट्स से भी ज़्यादा हैं
drupal पूरे web का 3 percent और उच्च 15 हज़ार websites का 15 percent रन करता है
drupal सरकारों शिक्षा nonprofits और बड़े उद्यमों में बहुत प्रचलित है
tutorial की इस श्रृंखला में हम निम्न विषय सीखेंगे: drupal कैसे संस्थापित करते हैं
हम दिखायेंगे कि drupal और अन्य सम्बंधित सॉफ्टवेयर्स को कैसे संस्थापित करते हैं
लगभग सभी यह कर सकते हैं इसके लिए आपको linux या windows का जानकर होने की ज़रुरत नहीं है
content विषय वस्तु कार्यप्रवाह: यहाँ हम सीखेंगे कि वेबसाइट की बुनियादी विषय वस्तु drupal में कैसे सुव्यवस्थित की जाती है
हम एक सरल website विषय वस्तु भी बनायेंगे भले ही आप इसे word processor में एडिट कर रहे हों
फिर हम कुछ प्रभावशाली विशेषताएँ सीखेंगे जो drupal को अद्वितीय बनाती हैं
वे विषय वस्तु अनेक विषय वस्तुओं के कार्यक्रम सम्बंधित formatted हुए प्रदर्शन आदि के बीच सम्बन्ध हैं
drupal का विस्तार कैसे करते हैं drupal की दूसरी सबसे प्रभावशाली विशेषता है modules or extensions
पहले उल्लिखित जैसा ही लगभग किसी भी विशेषता के लिए जिसकी आपको ज़रुरत है app की तरह एक module होता है
दसियों हज़ार modules होते हैं हम आपको दिखायेंगे कि आपके उद्देश्य के लिए एक modules कैसे चुनते हैं
site को लेआउट कैसे करते हैं एक बार जब बुनियादी विषय वस्तु और विशेषताएँ तैयार हो जाती हैं तो हमें इसके लिए एक सुन्दर डिस्प्ले बनाने की ज़रूरत होती है
लेआउट भाग में हम सीखेंगे कि website की दिखावट को आसानी से कैसे बदलते हैं
modules की तरह लेआउट या themes भी समुदाय के योगदान करने वालो की तरह उपलब्ध होती हैं
people को कैसे संचालित करते हैं
अन्य एकल यूज़र oriented cms जैसे wordpress से अलग drupal प्रायः स्थितियों में उपयोग किया जाता है जहाँ website पर भिन्न users भिन्न चीज़ें करते हैं
people प्रबंधन भाग में हम सीखेंगे कि भिन्नभिन्न roles को कैसे set करते हैं और उन्हें भिन्नभिन्न अनुमतियाँ कैसे देते हैं
site को ठीक से प्रबंधन कैसे करते हैं अंततः आखिरी भाग में how सीखेंगे कि drupal के कोड का प्रबंधन कैसे करते हैं
site को सुरक्षा और स्थिरता के लिए अपडेट रखना महत्वपूर्ण है
site को आसानी से एक्सेस करने के लिए नयी विशेषताएं प्राप्त करना भी बहुत सहायक है
इसके साथ हम इस tutorial के अंत में आ गए हैं
इसे सारांशित करते हैं इस ट्यूटोरियल में हमने निम्न के बारे में सीखा; drupal का परिचय drupal की मुख्य विशेषताएं और इस drupal श्रृंखला का ओवरव्यू
यह video acquia और ostraining से लिया गया है और spoken tutorial project आई आई टी बॉम्बे द्वरा संशोधित किया गया है
निम्न link पर उपलब्ध video spoken tutorial project को सारांशित करता है कृपया इसे download करें और देखें
spoken tutorial project team कार्यशालाएं चलाती है और प्रमाणपत्र देती है अधिक जानकारी के लिए कृपया हमसे संपर्क करें
spoken tutorial project nmeict मानव संसाधन विकास मंत्रालय और nvli संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निधिबद्ध है